ये एक गारमेंट्स कपड़ों की शॉप है जिसके अंदर --

बहुत सारे लोग आ रहे है और जा रहे है और एक लेडिज भी है।

इस फोटो के अंदर हरी हरी घास दिखाई दे रही है और हरे पेड़-पौधे और बीच में --

सड़क पे किनारे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं और एक भवन भी दिखाई दे रहा है।

एक बोतल रखी हुई है और उसके ऊपर एक गुलदस्ता भी रखा हुआ है और इसके अनेक प्रकार की तस्वीरें रखी हुई है।

रखे हुए हैं और अलग अलग तरह के सामान रखा हुआ है इसमें लेडीज और जेंट्स दोनों के कपड़े हैं।

जो जिसकी सीढ़ियां दिखाई दे रही है और गेट दिखाई दे रहा है और बगल में पेड़ पौधे खड़े हैं और एक बोर्ड भी लगाया हुआ है।

हरियाली छाई हुई है और पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं और बीच में --

इस फोटो के अंदर तीन प्रतियोगिता हो रही है महिलाएं खेल रही हैं जो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं कुछ भाग भी रही हैं।

इस फोटो के अंदर एक पौधों का बगीचा है जिसमें अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्रकार के पौधे हैं।

दिखाई दे रहे हैं और इसके आगे एक बड़ा सा बोर्ड लगा है इसमें लिखा हुआ है आओ बच्चों ट्वॉयज है।

फोटो के अंदर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है और इसके आगे पेड़ पौधे भी हैं और --

इस फोटो में शॉप आउट दिखाई दे रहा है जिसके आगे चेयर लगी हुई है और --

दिखाई दे रहा है और नीचे की साइड एक कार है और कुछ बाईकें भी हैं।

जिसके आगे बाईकें भी खड़ी हैं और कुछ लोग उसके अंदर जा भी रहे हैं और सड़क पे लोग जा भी रहे हैं।

जिसके एक ही साइड में एक गेट रूम का हॉस्पिटल का दिखाई दे रहा हैं और सड़क पे एक--

टेंपू एक कार और एक बाइक पे दो लोग जा रहे हैं और एक व्यक्ति पैदल भी जा रहा है।

यह एक नाई की दुकान है जिसके ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और ओ --

नाई उसकी दाढी कटिंग कर रहा है।

चेरी फल दिखाया गया है चेरी फल प्लेट के अंदर भी रखा हुआ है प्लेट के नीचे टोकरा है और कुछ लटकी हुई भी है।

नीचे लोहे के कुछ लगी हुई है और जिसके बगल में पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।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

इस फो इस फोटो के अंदर एक रूम दिखाई दे रहा है रूम के अंदर एक चेयर चेयर के ऊपर एक टावल रखा दिखाई दे रहा है और एक --

यह एक फ्रूट की दुकान हैं जिसके अंदर अनार अमरुद चीकू अंगूर संतरा --

एक्वेरियम एंड डॉग दिखा आ रहा है।

इस फोटो के अंदर एक झोपड़ी दिखाई दे रही है और उसके आगे कुछ--

इस फोटो के अंदर जयपुर की रोड का नजारा दिखाई दे रहा है।